ये ऑफिस है जहाँ पर चेयर में ये लोग बेठे हुए है यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें कंप्यूटर दिखाई दे रहा है।

अंदर भी हमे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है पीछे एक औरत भी बैठी हुई दिखाई दे रही है शाम-शाम का टाइम है हमें उजाला भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग हमे दिखाई दे रहे है।

देखिये यहाँ दोपहर का टाइम है यहाँ पर हमें आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पर मोटरसाइकिल साइकिल और फोर व्हीलर और ऑटो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें ठेलियाँ दिखाई दे रही है जिन ठेलीयों में एक लड़का कुछ रख कर बेच रहा है।

शादी का डेकोरेशन दिखाई दे रहा है यहां पे हमे रेड और येलो कलर के फ्लावर दिखाई दे रहे है यहां पर हमे टेंट और टेंट भी लगा हुआ दिखाई रहा है यहां पे हमे रोड भी दिखाई दे रहा है यहां पर हमे आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमे एक गोदाम दिखाई दे रही है यहाँ पर ये लड़के लोग मार्बल को गाड़ी में रख कर एक गाड़ी है उसके ऊपर रख कर इधर-उधर कर रहे है यहाँ पे हमें कुछ आदमी लोग भी दिखाई दे रहे हैं।